बहोत सारे बाइक भी है।

हरियाली में बहुत सारे है।

नी बहोत ही साफ है।

बच्चे लोग आर्ट एंड क्राफ्ट बना रहे हैं ।

लोग भी बहुत सारे हैं।

मिरर भी दिख रहा है।

बहुत सारे लोग भी हैं।

सी_सी_टी_वी भी एक है सी_सी_टी_वी कैमरा भी एक है।

इस पिक्चर में तीन यलो कलर का बस दिखाया गया है।

येलो कलर का वॉल और रेड कलर का लाइनिंग भी दिखाया गया है।

ब्लू कलर का स्काई दिखाया गया है।

हरियाली भी बहोत सारा है।

कंस्ट्रक्शन चल रहा है।

दिखाए गए पिक्चर पर एक ए_सी है।

ब्रिज बहोत ही पुराना लग रहा है।

दो एक ही कलर के और एक ही डिजाइन के केक है।

रेड कलर का चेयर भी है।

बहौत सारे लाइट्स भी है।

बहुत ही साफ सुथरा माहौल है।

दिए गए पिक्चर पर एक महिला बच्चों को नृत्य सीखा रही है।

येलो कलर का वॉल है।

ब्लू और वाइट कलर का फ्लोरिंग है।

दुकान में एक इंसान भी है।

इस पिक्चर में बहोत सारे स्ट्रीट्स लाइट दिखाई दे रहे हैं।

खिड़की वोटका है और ग्रीन कलर का लाइनिंग है।

एक वाइट कार भी दूर से दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में पेपर से बहुत कुछ बनाया गया है।